किताब कॉपी कलम रूल रबड़ एवं अनेक प्रकार के किताबें रखे गऐ हैं यह दुकान --

पेंटिंग किया गया है यह चर्च में बहोत सारे पंखे लगे हैं।

बहुत सारे सुविधा दी गई है ये स्कूलों --

यक यहाँ प बहोत सारे पुतले बनाए गए हैं।

यह टेम्पू तीन चक्के की हैं।

यह दुकान में श्री गणेश लिखा हुआ है यह दुकान काफी बड़ी है।

इस कोलेज में पोंनटिकन के पढ़ाई होते हैं।

यह पेट्रोल पंप में बहुत सारे बाइक एवं गाड़ियां लगी हुई है।